और कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा हैं हरे हरे से ऊपर की तरफ। हल्की सी आसमान की भी झलक आ रही है जिसमें कई परत हैं।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूँ की एक सीधा रास्ता है और यहाँ पर एक आदमी बाइक से जा रहा है।

जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि ये एक बड़ी सी नदी है।

और इसमें बोहोत सारे नाइक हैं जो कि अं सवारी पर बैठे हैं और एक कलछी की तरह --

सामने पानी की बड़ी टंकी दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ अ तारे भी लटक रही कुछ बिजली की। तिरंगा लगा है हमारा ति --

यहाँ पर जालीदार एक बना हुआ है।

वहाँ नीला-नीला सा छाया हुआ है। कुछ फिरोजी-फिरोजी क्लर के --

मैं यहाँ पर देख पा रही हूं।

अ-अ एैसे बतख की तरह कुछ कार्टून्स बनाए गए है बत --